कॉलेज का नाम शासकीय नवीन महाविद्यालय लिखा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा है।

नीचे डंबल रखे दिखाई दे रहे हैं।

बैड रखा दिखाई दे रहा हैं।

एक कमल का फूल दिखाई दे रहा है।

और एक लाइट भी दिखाई दे रहा है।